और यहां पर नीचे ऊपर मे झरना है।

और पानी झरने से सीधा नीचे आ रहा है और झरने में बड़े-बड़े पत्थर भी हैं और कुछ छोटे छोटे पत्तर भी हैं।

और बहार के साइड में बहुत सारे बड़े बड़े लम्बे लम्बे पेड़ भी है।